ए जे देखे खातिन बहार से--

ऐसा इ जानवर है इसको देखने का बहुत बहुत दिलो मे दिलो मे लाज लालशा होती है |